कपड़ो की दुकान नजर आ रही है। इसमें कुछ कपड़े टंगे हुए नजर आ रहें हैं। लोवर और निकर दिखाई दे रहें हैं।

यहां एक प्लेट है प्लेट प्लेट में प्लेट का रंग काला है प्लेट में दो चमच रखी हुई है जो की स्टील की है।

अंदर दुकान में दो आदमी नजर आ रहे हैं। बाहर तीन आदमी नजर आ रहे हैं। दो एक ने काले रंग का बैग टांगा हुआ है एक ने काले रंग का --

यहाँ एक फलों की दुक एक दुकान नजर आ रही है जहाँ पर बहोत सारे फल दिखाई दे रहे हैं एक डलिया लगी हुई है जिसका रंग --

यहाँ पर एक गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें एक मूर्ति नज़र आ रही है मूर्ति का रंग स्लेटी नज़र आ रहा है गार्डन में पीछे --